वॉव यार फोटो तो अच्छा लग रहा है वेसे--

भयानक भीड़ है इसकी ह ह ठीक हैं ठीक हैं अच्छा बात है वैसे--

अभी तो इमेज चेंज की था। इमेज वेसे अच्छा था वेसे क्या बोलते है।

ये बना रहै है अपने हिसाब से स्कूल उसकूल का है।

आठ बच्चे है टोटल इसमें --

ये ट्यूशन है टीचिंग करा रहै है जो --

एक दो तीन चार और पांच लड़की है।

ये बेंगोली दुर्गा माता जो हैं।

और पब्लिक इस हिसाब तो है तो षडयंत्र टाइप का होगा फिर--

पर गेट बंद है काहे कि कुछ बोल नहीं सकते बाकि फोटो अच्छा आया है ठीक है वैसे --

माइनस में चले जाएगा ऐसे में तो यार दस सेकंड अगर करूंगा मै तो--